इस इमेज मे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे है।

इस इमेज में एक होटल दिखाई दे रही --

कुछ गाड़ी बाइक पार्क की हुई दिखाई दे रही है।

है टेबल पर ग्लास चम्मच प्लेट दिखाई दे रहे है।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

यह इमेज दीपशिका कॉलेज की है।

जिसमें एक पक्षी भी दिखाई दे रहा है।

जिसपर कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं।

रूम की है जिसमें पेड़ दिखाई दे रही है।

इस इमेज में पानी दिखाई दे रहा है।

पौधे बोर्ड एली पानी कि टंकियां दिखाई दे --